यहाँ एक सैलून है उस सैलून मे एक लड़का खड़ा हुआ है जो अपनी फोटो ले रहा है उसके पास मे बहुत सारी चेयर रखी हुई हैं ।